और एक स्टेशनेरी में बेचने वाला तथा एक लेने वाला खड़ा है इस स्टेशनेरी में बहुत सारी पेन रखी हुई है और बहुत सारी किताबें दिख रहीं है।

यह एक मस्जिद की इमेज है इस इमेज में हमें एक ए.सी. दिखाई दे रही है और कुछ खिड़कियााँ दिखाई दे रही है।